लगता है यहां पर डांस वगैरह होने जा रहा है इसलिए यहां पर वगैरा चलेगा इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई है। यहाँ --

ये एक ग्राउंड है। ग्राउंड देखने मे बोहोत बड़ा है और इ इस ग्राउंड में कुछ सारे बोहोत सारे लोग भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बोहोत बड़ा बना हुआ बड़ी बनी हुई है। यहां पे पेड़ पौधे भी बोहोत ज्यादा लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। या पे --

चारों और से खंबे लगे हुए हैं और उसमे तार भी बंधा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी निकलते दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी बहोत ज्यादा लगे हुए हैं। इस पे बालकनी भी बनी हुई इस पे ऐंगल वगैरह भी लगे हुए --

घर है यह घर के सभी पड़ोस में टंगा हुआ है यहाँ पर पंखा वगैरा भी लगा हुआ है यहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर शटर है।